वहाँ से ट्रेन निकल रही है बहुत लंबी ट्रेन है।

यहाँ सामने लाल रंग की दो मंजिल की बिल्डिंग है।

ये एक पुल है नदी के ऊपर बना हुआ है ये लोहे क--

लगी हुई हैं और शीशा लगा हुआ है।

यहाँ सामने कुछ सेल्फ बने हुए हैं इन सेल्फों में अलग-अलग सामान रखा हुआ है।

बाइक के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है पास में एक लाल रंग की टी-शर्ट में छोटा बच्चा नीचे की तरफ खड़ा है पीछे की तरफ हरे-हरे पेड़ भी हैं।

नजर आ रहे हैं रोड पर लोग भी चल रहे हैं और एक सफेद रंग की गाड़ी भी खड़ी है।

एक महिला बैठी हुई है इसने पिंक कलर की और ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है।

छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं और बीच में से जाने के लिए नीचे कुछ सिडियाँ भी बनी हुई है।

मैदान है मैदान के चारों तरफ हरे-हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

पेड़ है एक झोपड़ी के आकार का दो मंजिल का घर बना हुआ है।

और ग्रिल बनी हुई है ऊपर से काले रंग की है और लंबी है वो--

ये एक मंदिर है सामने की तरफ मूर्ति लगी हुई है।

जिसने सूट पहना हुआ है वह किसी चीज के ऊपर बैठी है।

मछलियाँ पड़ी हुई हैं कुछ छोटी मछलियाँ हैं कुछ बड़ी मछलियाँ हैं।

आगे की तरफ एक काउंटर रखा हुआ है उसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है।